ये हमारे सामने जो दृश्य दिखाया गया है इसमें बहुत सारे झूले लगे हुए हैं जिसपे बच्चे झूला झूल भी रहे हैं। आसपास में पेड़-पौधे हैं ।

ये जो सीन दिख रहा है ये स्कूल का सीन है जिसमें एक रिसेप्शन पर बैठे हैं | हो सकता है स्कूल का न हो बट मुझे देखने से स्कूल का ही लग रहा हैसो एक इंसान है---

यहाँ जो दृश्य हम हमें देख रहे हैं इसमें बहुत से बहुत अच्छा वाटरफाल हो रहा है| कुछ लोग इसमें अपना आराम से नहा रहे हैं।